और यहां पे अच्छा लग रहा है देखने में और एक दो गो है जो की बहुत अच्छा है उसी में नाई में नाई चल रही है पानी में।

अच्छा खासा लग रहा है जगह भी है बहुत प्यारा है ठीक लग रहा है अच्छा है सुंदर है।

और पूरा एथी का सब्जी ढ़ेरी सब्जी है रखा गया है इसमें मेथी भी है अच्छा लग रहा है ।

और च्छा लग रहा है पूरा हरियाली-हरियाली है जो की बहुत प्यारा लग रहा है देखने मे। सुंदर है सब कुछ ठीक-ठाक है।